यह दृश्य मार्केट का है जहां पे बहोत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

एक आदमी भी दिखाई पड़ रहा है।

साइड में एक बोर्ड लगाया हुआ जो कि सफेद रंग का है उसपर लाल रंग का इंडीकेटर भी दिखाई पड़ रहा है।

झाड़ू का रंग गोरा दिखाई पड़ रहा है।

बहोत बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई पड़ रहे--

इस दृश्य में दुकान दिखाई पड़ रहा है जहां पे तीन शटर दिखाई पड़ रहे है जोकि नीले भूरे और ग्रे कलर के दिखाई पड़ रहे है।

वायर का रंग पीला है।

अंदर में बैठने वाला बनाया हूं जो की सफेद और काले रंग का है।

साइड में एक और आदमी खड़ा जिसने अपने हाथ में एक रेड कलर का बुक ले रखा है उसने नीले रंग का शर्ट और नीले रंग का पैंट पहन रखा है।